बहुत बड़ा चारों तरफ रोड है और पीला कलर का है पीला कलर का है।

ताज़ी-ताज़ी सब ताज़ी-ताज़ी सब-सब्जिया है जो आदमी खरीदने आते है और यहाँ हर हर दाम सब्जिया है हर सब्जिया है हर किस्म की सब्जिया है जो बहुत अच्छे दाम में मिलते है।